यहा पे कछुए ख कछुए पाल रखे है। पाणी है यहा पे। कछुए पालन है। एक झू है ये और यहा पे कछुए तीन कछुए दिख रहे बहोत है बडे बडे।

मशीनों से ठीक करी जाती है जीना धरा है ऊपर को डॉक्टर हृदय लिखा हुआ है।

इसमें तोता गाय है काले कलर की एक अंदर बैठा हुआ है एक पिंक कलर की बिल्डिंग है वाइट कलर भी हो रखा है।

कार का शोरूम है यहां पर गाड़ियां नई नई खड़ी है बंदे देखने आ रहे हैं उसका बायोडाटा लगा है की क्या क्या फ्यूचर है उसके और बड़ी गाड़ी है।